बैनर लगा हुआ है | कई सारी बाइक खड़ी हुई है | एक महिला भी खड़ी है।

सामने एक कार खड़ी है वाइट कलर में | व कई लोग साथ में खड़े हैं |

आस-पास हरी घासे है लम्बे-लम्बे हरे खजूर के पेड़ दिखाए दे रहे हैं।

एक डैम बना हुआ है कहीं आस-पास पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

एक व्यक्ति साइकिल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है रेड वाइट ब्लू कलर का इंटीरियर है।

एक ग्रीन कलर का बॉउंड्री गेट दिखाई दे रहा हे |

प्लस ग्रीन की बॉर्डर नज़र आ रही हे |

यह इमेज एक कॉरिडोर की है यहां येलो और व्हाइट कलर का इंटीरियर है।

कुछ वर्कर्स काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं सिमेन्टिंग हो रही है।

यह इमेज किसी रेस्टोरेंट या बार की लग रही है।

उसके उपल लाइटिंग का डेकोरेशन दिखाई दे रहा है |

एक रोड दिखाई दे रहा है | साइड में कुछ पेड़ नज़र आ रहे हैं और एक व्यक्ति दिखाई --

इस बिल्डिंग का कलर पिंकिश हैं और यहाँ पर एक आंगन दिखाई दे रहा है |

आस पास घास उगी हुई हे | पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं |

ब्लू कलर का वॉल दिखाई दे रहा है | पीछे वाइट कलर कि लाइनिंग एंड ब्लैक वॉल है।

पल्स ब्लू कलर का गेट दिखाई दे रहा है।